बीच-बीच में केले के छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए है जब फूल ख़तम हो जाये तो --

फाइबर की भी सामान दिख रहे --

ये किसी इंटर कॉलेज का गेट दिख रहा है जिस पर लिखा है महराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज देवरिया।